यह एक सैलून का फोटो है यहां किताबे रखी हुई है। टेबुल पे काले कलर के बैग है।

यह एक गार्डन का पिक है गार्डनर पौधे को पानी दे रहे हैं हरे भरे सुंदर पेड़ है।

एक बच्ची बैठी हुई है | सामने पीले कलर की बच्ची बैठी हुई है |

की बना रहे हैं कुछ तौलिया दिखाई दे रही है कुछ बैलून दिखाई दे रहे है कुछ पंखे भी लगे हुए हैं ।